रंग बिरंगे रंगोंसे इन्हे रंगा गया है देखने मे यह बहुत ही अच्छा लग रहा है हमे यहाँ--

इस चित्र मे हमे एक मछली की दुकान दिखाई दे रही है जहा पर हम अलग अलग तरहा की मछलिया देख पा रहे है साथ ही हमे यहा पर कही झींगे भी रखी हुई दिखाई दे रहे है।

वही हमे दो लोग मछलीओं कों साफ करते हुए दिखाई दे रहे है। यहा पर हमे बाल्टीया भी रखी हुई देखने को मिल रही है। देखने मे दृश बड़ाही रोमांचक नजर आ रहा है।